जहां पर बहोत सारे लोग खड़े हैं शायद कोई गेम टूर्नामेंट --

और कुछ लोग बैठे हैं कुछ लोग खड़े हैं चारों तर--

परफॉर्म करने जा रहे हैं या फिर डेकोरेशन कर रहे है।

उन्होंने कलर कॉन्बिनेशन सी है जैसे कर्टन्स ऑरेंज --

दुल्हन जो है वो रो रही है और उसके फैमिली मेंबर --

इसमें बैठ कर लोग दूसरे स्टेशन तक पहुंचते हैं और साइड में पहाड़ हैं और--

वो लेटर डालने के लिए और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो कितने घंटे तक खुला रहता है या कितने बजे खुलता है।

एक फोटो जिसमें लिखा है।